चित्र में एक ढाबा के बाहर की चित्र दिखाई गई है।

ऑरेंज कलर के जैकेट और ट्राउजर भी पहन रखा है।

एक मिरर लगी हुई है।

सर्विस के अल्बेस्टर की दीवाल है अल्बेस्टर की छत है।

छोटे छोटे घास लगे हुए हैं।

एक टकला व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे कपड़े हैंग करके टंगे--

जिन ट्रक का कलर येलो है।

जिस सड़क पे एक ऑटो जाती हुई नजर आ रही है।

एक नेटवर्क टावर दिख रही है।

किनारे पर कुछ पत्तियां दिखाई दे रही हैं।

एक व्यक्ति ने हेडफोन पहने हुए हैं।

इस चित्र में एक चर्च की तस्वीर दिखाई गई है।